ये पेंसिल बॉक्स एंड पेन में सब पड़े हुए टेबल पे और एक बहुत अच्छा ऐसे एक रैक ब्राउन कलर की रैक बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड --

एक दो प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं एक प्लेयर के हाथ में बैट है और एक प्लेयर बाउंड्री के पास खड़ा हुआ है।

और रेक्स के अंदर बहोत सारा सामान पड़ा हुआ है इसमें मैगी पड़ी हुई है बिस्किट पड़े हुए--

उसके रैक के ऊपर तक इसकी रैक बनी हुई है और रैक बहुत अच्छी बनी है बहुत स्पेस --

और इस टाइल्स बहोत प्यारी लग रही है टाइल्स का जो ग्रे कलर व्हाईट कलर हैं बहोत ही प्यारा लग रहा और साथ में इसके पर्पल कलर की टाइल्स है।

वो तो बहोत अच्छी लग रही है इसके ऊपर फोर्सिंग पे लाइटिंग लगी हुई है जिससे टायर पे--

और गुरुद्वारे के आगे बहुत अच्छी एक रोड जा रही है और रोड बहुत अच्छी और क्लीन एंड क्लीन बनी हुई है।

उसके पास बेंचेस पड़ी है जिस पर लोग आके बैठते हैं और नदी का एंजॉयमेंट लेते हैं और नदी का नजारा लेते हैं और व्यू बहुत अच्छा दिख रहा --

ये एक बहोत अच्छा सा रूम दिख रहा है ये रूम होटल का रूम दिख रहा है जी--

इस रूम के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है बेड पे एक गद्दा पड़ा हुआ है गद्दे पे एक बेसशीट लगी हुई है और बेसशीट पे दो--

और सब कस्टमर यहीं पे आ के इधर सारी अपनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं बुक्स परचेस --

और इस इस की लोग यहां पर कस्टमर बनाते हैं और अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं।

अपने पैच को सेव करवाते हैं और इस और यहां पर कैशियर भी होते हैं जो जिनको पैसे की जरूरत होती है सेविंग को निकालने भी आ--

यह एक बहुत बड़ी सी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पड़ी है इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसमें बहुत सारी ब्रांड्स के--

बोर्ड लगे हुए हैं इसमें लॉइट बोर्ड का भी लगा हुआ है इसमें इंटेक्स का बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें एल_जी का बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें --

ये व्हील चैर लेते हैं जिसमें ये सारी जैकेट्स पड़ी हुई हैं और विंटर के सारे कपड़े पड़े हुए हैं।

और ये बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक मुझे ये विशाल में लिख रहा है क्योंकि सामने वी_टू लिखा है आई थिंक विशाल मिगाट लग रहा है मुझे।

तो अपने अ बेड पर लेट सकते हैं और ये होटल का रूम लग रहा है और ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है ये रूम की वॉल बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लग रही है।

और बहुत बड़ी टायर की शॉप है उसमें आई थिंक मिनीमम आई थिंक एक--

जब टायर दिखा रहे हैं सेवन टायर्स दिखा दे रहे उसके पीछे भी बहुत सारे टायर्स पड़े हुए है।

हो रहा है और बिल्डिंग के ऊपर जो आसमान बना हुआ है वो अलग-अलग का आसमान बना हुआ है पर का आसमान बना हुआ है बिल्डिंग के बाहर एक--

थोड़ी व्हाइट कलर की बिल्डिंग लगी है एक साइड में इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग लगी है एक्चुअल्ली में पता चला है की सभी बिल्डिंगे --

कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी लग रही है सी_एट के टायर से लगे हुए हैं।

ये टायर्स बहोत अच्छे लग रहे हैं और बहोत बड़े बड़े टायर्स दिखाई दे रहा है टायर्स ट्रैक्टर में यूज होते हैं या बहुत बड़े ट्रक मे यूज होते हैं बहुत कंटेनर में यूज होते हैं।

ट्रैक्टर की आई थिंक इसकी कॉस्टिंग आराम से एक टायर की कॉस्टिंग से चार पार हजार की कॉस्टिंग होती है।

बहोत अच्छा लग रहा ये बिल्डिंग और उसकी बिल्डिंग आगे बहोत अच्छी सी रोड बनी हुई रोड बहोत बनी है उसके के सामने पेड़ बना हुआ है वो भी बहोत अच्छा लग रहा है की--

यह बाजार लगा हुआ है जिससे लोग अपनी चीजे खरीद रहे हैं बहुत ज्यादा रश हो रहा है।

बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही है एक बिल्डिंग ब्लू बिल्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही है।

बहोत फेमस टेंपल है और ये हर लोग बहोत लोग जाते हैं।

ये एक बहुत बड़ी सी एक आय थिंक मशीनरी कोई पड़ी हुई है ये मशीनरी दो मशीनरी पड़ी हुई है और ये बहुत बड़ा--

इसलिए मशीन बहुत स्टाइलिश मशीन लग रही है बहुत कॉस्टली मशीन लग रही है।

और ये रैक्स बहुत अच्छी लग रही है रैक्स में बहोत अच्छा अ रैक बना रखी है जिसकी शॉप है।

अलग-अलग कंपनी के वाचेस पड़ी हुई हैं और बहुत सारे ए_सीस् दिख रहे हैं बहुत हो रही हैं।

ये एक बहोत अच्छा सा ऑफिस है ये बहोत अच्छा ऑफिस है जिस ऑफिस के अंदर टेबल चेयर पड़ी है जिनमें एक चेबल लकड़ी चे पड़ी और एक--

इस ऑफिस के अंदर एक एक टेबल पड़ी है बहुत प्यारी लग रही है और एक छोटा स्टूल पड़ा है आई थिंक ये क्लीनिक लग रहा है जिनमें --

यहा पर ऐसी बड़ी चेयर पे डॉक्टर बैठता है और छोटी चेयर पे पेशेंट बैठता है जो डॉक्टर पेशेंट को देखता है वो छोटी चेयर रखता है।

और यह इसकी वॉल लग रही है वॉल बहुत प्यारी लग रही है वॉलपेर --वॉलपेपर लग रहा है पिंक कलर वॉलपेपर लग रहा है और पेंट हो रहा है।

ये बहुत अच्छा सा एक सीनरी नहीं दिख रही है ये कोई पहाड़ी इलाके का--

बीच के पास है ये कोई समुद्र के पास है और इसमें पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं और हो रही है।

उपर का ब्लू कलर से है और नीचे के एटीएम रेड कलर से बहुत अच्छा लग रहा --

ये बहोत बड़ी सी एक दुकान लग री है जिसमें उसके बॉक्स के अंदर जिसमें उसके--

और एक ब्लैक कलर का पॉट तो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत प्यारा लग रहा है।

बहुत सात और इस बॉल पे बहुत सारे बहुत स्टाइलिश टैब लगे हुए हैं।

और इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही है और नीचे इसके फ्लोर में जो टाइल लगी है वो अलग ही लुक दे रही है पूरे रेस्टोरेंट को और ये रेस्टोरेंट पूरा फुली फुल है।

और हज और अब उनको भी अपने ग्राउंड में जाके या अपने पार्क में जाके योगा करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए जिससे आपकी--

ये एक बहुत अच्छा सा एक जिम लग रहा है इस जिम के अंदर बहुत सारी ट्रेडमिल पड़ी है।